सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे--

दो लोग खड़े हैं एक कुर्सी पर बैठा है।

दो फौजी जैसे कपड़े पहने हुए हैं पेड़ भी बहुत सा--

एक आदमी खड़ा हुआ है।

और फूलों के पौधे बहुत सारे रखे हुए हैं।

रेड व्हाइट ऑरेंज येलो ।

येलो व्हाइट कलर की पर्ची लगी हुई है।

यह एक होटल है यहां पे बहुत सारी प्लेट ग्लास टिशु पेपर चम्मच रखे हुए हैं।

एक तुआ है तंबू के पीछे पेड़ है।

और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं कुछ पेड़ों की कटिंग हुई है।

सामने बहोत सारी गाय दिखाई दे रही हैं।

दीवाल पे लाइट एक लगी है।

रेड कलर का दरवाजा है।

लोहे के खंभे लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए।

सामने ऑरेंज कलर का कुछ बना है उस पे छठ एवं कार्तिक लिखा है।

जिसपे लिखा है का रवि बुक सेंटर कलरफुल ।

साइड वाले खंभे पोस्टर लगे हुए हैं।

और एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

दौड़ते हैं दो मशीनों पे पटनी पड़ी है दो पे नहीं।

और एक लोहे का कुछ रखा है उस पे छोटी छोटी चार पहिए लगे हैं एक सीढ़ी--

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग हैं बहुत औरतें हैं आदमी हैं।

बोहोत सारे पोस्टर लगे हैं। एक छत पे लगा है।